जिसकी छत ऑरेंज और नीली पुती हुई है।

और सफेद रंग का बोर्ड भी है एक--

में यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

और स्विमिंग पूल में जाने के लिए सीढ़ियां भी लगी हैं।

इसका कलर सफेद है और उसकी दीवार पे तनायरा लिखा हुआ है।

लाइट भी बहोत जल रही है और पुतले भी औरत के हैं और साड़ियां पहने हुए हैं पुतले --

यहाँ हमें मार्केट दिखाई दे रही है।

गेट के बाहर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

हमें यहां पर एक रोड दिखाई दे रही है।

और दो नारियल के पेड़ दिखाई दिखाई दे रहे हैं।

और मकान के सामने गार्डन भी दिखाई दे रहा है।

सदरी हल्की हले कलर की है और टोपी सफेद है।

पिलर भी ढले हुए हैं और एक मिस्त्री दरवाजा लगा रहा है।

गुलाबी एक नीला और दीवाल पे सजावट है।